और इधर एक खजूर का पेड़ है और यहाँ सिरिस का आईं सागवान का भी पेड़ लगाए गए है इधर भी एक ऊँ ऊँ घर है।

पोखरा में एक पेड़ है पेड़ के उधर बिजली के खंभे हैं और बहोत सारे पेड़ हैं रस्ते हैं बहुत अच्छे ।

आप देख सकते हैं की वहाँ एक आँगनवाड़ी है आँगनवाड़ी के इधर एक --